ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है बहुत से पेड़ पौधे दिखाई दे रहा हैं यह गेट बंद है।

कुछ कलाकृतियाँ हैं और इसके आस-पास काँच के ग्लासेस लगाए गए हैं।

यह एक लाइब्रेरी का दृश्य है यहाँ कोई बच्चे दिखाई दे रहे हैं कुछ कुर्सीया दिखाई दे रही हैं।

दर दृश्य एक जिम का दृश्य है जिसमें कुछ लोग दे इसमें अपना वर्कआउट करते हुए दिखाई दे रहे है कुछ मशीने दिखाई दे रहे है ऊपर सीलिंग दिखाई दे रही है जिसमे कुछ लाइटे लगी हुई है यहाँ एक मिरर भी दिखाई दे रहा है नीचे फ्लोर दिखाई दे रहा है।